यह फोटो एक पार्लर का फोटो नजर आ रहा है जिसमें फर्नीचर किया हुआ है कांच दिखाई दे रहे है मेंहदी के पैकेट्स लगे दिखाई रहे हैं।

पीछे के साइड रोड बना हुआ है और कई सारे बिजली के वायर नजर आ रहे हैं।

यह फ़ोटो एक बिल्डिंग के बाहर का फ़ोटो है इस बिल्डिंग मे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है एस.बी.आई. ।

यह फोटो एक ऑटो रिक्शा का फोटो है जोकि पुराने जमाने वाला ऑटो है। ऑटो एक बंजर जमीन पर खड़ा हुआ है।